यहाँ ट्रांसफार्मर है देखिए उस सड़क पे उधर के आदमी आ रहे है इस सड़क पे काफ़ी गन्दगी किया है लगता है यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी वगैरह नही है जिस की वजह से यहाँ गंदगी मचाया गया हुआ है ।

ये हॉल है और इस हॉल में देखिए बच्चे हैंऔर हॉल को बैलून से सजाया गया है जो कई कलर के बैलून है जैसे --